काउंटर पर एक ब्लैक माइक्रोवेव ओवन रखा है।

पानी मे आसपास के पेड़ और आसमान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है।

और कई सारे पीले रंग के लाइट भी इस तस्वीर में नजर आ रहे है।

खेल के मैदान में कई रंग की स्लाइड और झूले लगे हुवे हैं।

जिसके सामने कई सारी कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और काफी सारे पेड़ और पौधे भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं।

और इस तस्वीर में एक लाल रंग की छत दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर दो खिड़कियां नजर आ रही है।

बीच में लाल और नीले रंग की धारी वाला कालीन बिछा है।

सीमेंट के पाइप एक के ऊपर एक रखे हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर में एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक दिख रहा हैं।

यह एक बिल्डिंग का चित्र है जिसमें सफेद और पीले कलर है।

इसमें सफेद रंग की वॉज ब्रेसिंग दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक बड़ा ब्लू कलर का फैक्ट्री बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिनके ऊपर नीचे के साइड लाल और सफेद रंग किए गए हैं।

इस तस्वीर में एक कंप्यूटर नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में काफी सारे केक दिख रहे है।

और तस्वीर में कई सारे पेड़ और पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में बंगलो जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

गेट के ऊपर काला रंग लगाया हुआ दिख रहा है।

जिसके ऊपर कई केक के फोटो भी दिखाई दे रहे हे।

और कई सारे नीले रंग के खंभे भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक लोहे की जाली भी दिखाई दे रही हैं।

जो सफेद रंग का है उसके ऊपर काले रंग से वेश लिखा हुआ नजर आ रहा है।

ट्रक अलग अलग रंगों की और छोटी बड़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक दुकानों और ऑफिसों वाला कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है।

और इस चित्र के आसपास कई वृक्ष दिखाई दे रहे है।

और इसके ऊपर कपड़े सूखते हुए दिख रहे है।

चेक अंग्रेजी हिंदी और गुजराती भाषा में लिखा हुआ है।